उसमे दो खिड़की दो गेट लगे हुए हैं। लाइट का खम्बा लगा हुआ हैं।

एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है।

एक ऐ गुम्मे की दीवाल बनी हुयी --

कुछ लड़कियाँ डांस कर रही हैं।